मालायें कृष्ण जी और राधा जी को चढ़ी हुई हैं। ऊपर भी फूल मालायें लगी हुई हैं।

नीचे कुछ नट बोल्ट पड़े हुए हैं आगे दुकाने हैं।

यहाँ पे एक बड़ा सा भवन बना हुआ है भवन के ऊपर लंबी-लंबी चुम्बु वाली वूममेट बनी हुई है।

एक लड़का खड़ा हुआ है। ऊपर बल्फ है। बल्फ जल रहे हैं। एक बड़ी-सी ट्यूबलाइट हुई हैं। एक रखी हुई है।

ऊपर बड़े-बड़े घण्टे लगे हुए हैं। बल्ब लगे हुए हैं। बल्ब जल रहे हैं। पीछे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

किताबे रखी हुई हैं। ऊपर लाइटे लगी हुए हैं। इसमें टिवलाइट लगी हुई हैं। सभी जल रही हैं।

यहाँ पर टेबिल रखे हुए हैं। टेबिल पे अलग-अलग रंग-बिरंगे खिलौनों रखे हुए हैं। प्लेटे रखी हुई हैं।

पोस्टर लगे हुए हैं। आस-पास बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे हैं। एक खंभा है। खंभे पे एक झंडा लगा हुआ है।

सेंडिल पहनी हुई है है। आगे एक बड़ी सी हवेली दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग के आगे बड़े-बड़े होलडिंग लगे हुए है शटर लगे हुई है।